यहाँ सामने की ओर एक अंदर दुकान दिख रही है दुकान के अंदर दो ऑटो खड़े हुए है जो बैटरी ऑटो है।

सामने की ओर एक दिख रही है जो कि लकड़ी की बनी हुई है।

नीचे की ओर छत दिख रहा है छत के ए नीचे तीन गमलें रखे हुए हैं गमलो के अंदर --